यहाँ एक बुक स्टोर है जहाँ पर लोग किताबे खरीदने आते है यहाँ बड़े बच्चे सभी के लिए किताबे उपलब्ध कराये गए हैं।

यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का तस्वीर है जहां पर दो महिलाये एवं एक पुरुष वादन कर रहे हैं।

यहाँ मेरे शहर में मौजूद एक श्री रजवाड़ी बुक स्टोर है जहाँ हर तरह के बुक उपलब्ध कराई गई है।

मेरे गाँव मे निर्मित एक घर का तस्वीर है जहां पर पिल्लर लगाई जा रही है। यहा के स्थानी लोग ही यहा का घर बनाने मे कार्य करते है।

यह मेरे विद्यालय मे हो रहे एक प्रोग्राम की तस्वीर है जहां पर छोटे - छोटे बच्चे अपना डांस दिखा रहे हैं एवं कला का प्रदरशन कर रहे है। यह छबीस जनवरी मे आयोजित किया गया था।

इस विद्यालय मे अच्छी सुविधाये बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है एवं पढाई बहुत ही अच्छी किस्म की कि जाती है।